जिसपे हम दो चार आधी नंबर देख सकते हैं।

यहां बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं।

सड़के कच्ची हैं मिट्टी की बनी हुई हैं।

यहां पर एक ठकराल साइकल स्टोर है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की साइकिले मिलती है यहां दो तीन साल के बच्चों के लिए भी साइकले है।

जिसका नाम अरेज पॉलिटेक्निक कॉलेज है।

यह कॉलेज बहुत बड़ा है हम कॉलेज में गार्डन भी देख सकते हैं।

दुकान के बाहर इसके पार्ट्स भी रखे हुए हैं।

यह एक स्टूडियो का दृश्य है जिसका नाम द चेन्नई है।

दिवस जो जुड़ी हुई है उन्हें देख सकते हैं।

जिसमें हम बहुत बड़ी गाड़ी देख सकते हैं जिस पे पेट्रोल पंप का रंग किया हुआ है।

यहं एक पहाड़ों का दृश्य हैं जिसमें हम--

कुर्सियों को भी सजाया गयां हैं अलग से हल्दी का कार्यक्रम करने की भी सुविधा हैं जिसमें पीले रंग का डेकोरेशन किया है।

शीशों पर बल्ब की मदत से सजावट की गई है।

छत ऊपर कपड़े की मदद से सजावट तथा ढाका गया है।